सामान रखा जाता है और इसमें एक अच्छी ए_सी भी लगी हुई है और काफी अच्छा ऑफिस है ये।

को खिलाया जाता है। इस गाय का कलर ब्लैक और व्हाइट है जो के ब्लैक एन व्हाइट --

ये एक नदी का फोटो है जिसमें एक कश्ती दिखाई दे रही है और इस कश्ती में दो लोग बैठे हुए हैं।

ये एक ग्राउन्ड का फोटो है और इस ग्राउन्ड के बाहर एक अ टावर भी खड़ा हुआ है। यहाँ पर काफी सारे लोग --